ये यहाँ के सबसे पुराने और मशहूर हनुमान मंदिर है।

छत काफी खूबसूरत है। पिले रंग का रेलिंग है।

ये बीच नुक्कड़ पर ये मकान यहाँ पर खड़ा है जहां पर बहोत सारे ऑफिसेस वगेरा हैं।

रोड वगेरा भी यहाँ का काफी खराब है यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं।